और यहां पे टेबल्स लगी हुई है टेबल्स में क्रीम कलर दिखाया गया है और ये चेयर्स जिन में पनिया लगी हुई है।

इसके अलावा हमें कुछ पेड़ के पत्तिया दिखाई दे रही है ये एक बड़े से पेड़ की पत्तियां है पीछे हमें यहां पे आसमान दिखाया गया है।

'' इस इमेज हमे यहां पे एक मेन्स वियर दिखाए गए है जैसे की इसमें शूज दिखये गए है जो ब्लैक कलर के और --''

इस इमेज हमे एक घर दिखाया गया है जिसका रंग क्रीम एंड रेड दिखाया गया है।

हमें यहां पर कुछ तार दिखाए गए है जिनपे कुछ पक्षी बैठे हुए है इसके अलावा मंदिर पे भी कुछ पक्षी बैठे हुए है हमे यहा पे बड़े बड़े पेड़ दिखाए गए है और आसमान दिखाया --

एक औटो जिसका कलर ब्लैक दिखाया गया है और वो इसमें यहाँ पे थोड़ा ऑरेंज कलर भी दिखाया गया है पीछे एक लड़का खड़ा हुआ है।